यहां कपड़ों की दुकान है बहोत सारे पेड़ भी है एक पुतला भी खड़ा है।

ये तस्वीर एक पूजा शटल की है यहां पर पूजा की सामग्रियां रखी हुई हैं।

और बहोत सी मिठाइयां रखी हुई हैं।

ये तस्वीर एक दुकान की है।

खेत में हरी फसल उगी हुई है।

में भैंसे नहा रही है।

ये तस्वीर लोगों की है।

और बहोत सारे नए कपड़े भी टंगे हुए हैं।

इस पर एक लड़की बैठी है और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

तस्वीर के अंदर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

इन पर कंप्यूटर रखे हुए हैं।

यहां बहुत बड़ी परचून की--

ये तस्वीर एक मंडल की है।

ये तस्वीर एक लड़के की है।

वेह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के पास खड़ा हुआ है।

दीवार पर फोटो लगी हुई है।

दीवारों पर गुब्बारे लगे हुए हैं।

यहां लाइटे भी जल रही है।

ये तस्वीर एक स्कूल की है।

यहां बहोत बड़ी बिल्डिंग भी है।

यह तस्वीर एक पार्क की है पार्क में बहुत सारे स्मारक लगे हुए हैं।

हरी घास का मैदान है और एक घोड़ा--

रखा हुआ है और बहुत सारे लै--

उनके पीछे पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां एक लैपटॉप रखा हुआ है और एक पंखा भी चल रहा है।

ये तस्वीर एक बड़े बैंक की है।

यहां ए_सी बी लगा हुआ है और कुछ दरवाजे भी हैं।

ये तस्वीर एक प्लेग्राउंड की है यहां बहुत सारे लड़के--